आस-पास कुछ फसले है जो ग्रीन कलर की दिख रही है और स्काई ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है।

पिक्चर में कुछ सोप्स की दूकान है जहां पर कुछ यहां अड्डियां रखी है यलो और ऑरेंज कलर में।

कुछ लोहे के खम्भे और जालियाँ दिख रही हैं और यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारे दृश्य दिख रहे है ऊपर आसमान वाइट कलर का दिख रहा है।

कलर की है कहीं पर व्हाइट कलर का पेन्ट है एक वृक्ष लगा हुआ है ग्रीन कलर का और आसमान बन है स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है।

लाइटे चमक रही है अ पर्पल कलर मे और एक और बाइक खड़ी है जहां पर खड़ा हुआ --